सिर्फ पैसा है और लेबरो की हाजरी भरने के कार्य होता --

जहाँ पे लिखा है मे गॉड ब्लेस यू । यहाँ पे ईसाई धर्म के आदमी आके --

यह देश में क्री क्रिसमस डे मनाये जाने का तस्वीर दिखाई गयी है और यहाँ पे एक --

यह दृश्य में एक होटल की तस्वीर दिखाई गई है। यह होटल काफी बड़ी है। यह होटल का नाम होटल गेटवे कैनाडा है।

यह देश मे एक फैक्ट्री के तस्वीर के अंदर की तस्वीर दिखाई गयी जहाँ पे बहुत सारे वर्करो द्वारा --

यात्री सवार होके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कार्य कर रहे।

कुछ कुछ बच्चे इधर-उधर पीछे में भी खड़े नजर आने का जो ये लोग थक चुके हैं हमे --

बहुत सारे आदमी नहाते हुए नजर आ रहे हैं। अम्म यह स्विमिंग पूल के पानी काफी --

साफ़ नजर आ रही है। यह स्विमिंग पूल भी काफी बड़ी नजर आ रही है। यह स्विमिंग पूल में आदमी नहा नहा के एंजॉयमेंट भी कर रहे --

अम यह बैंक मे बोहोत सारे स्टाफ भी नज़र आ रहे। बोहोत सारे आदमी यहाँ पर बैठ कर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे होगे। यह बैंक बोहोत ही साफ सुथरा नजर आ रहे है।

यह दृश्य यह दृश्य में एक बार दो तीन बार हो रहा है। घर को कलर किये जाने का कार्य कर रहे हैं।

हम को यहाँ पे आके अपने पासबुक को प्रिंट भी करते है क्योंकि यहाँ पे पासबुक प्रिन्ट करने का --

यह दृश्य में एक पुस्तक उम्म की उम्म दुकानें दिखाई गई हैं। यह पुस्तक दुकानों में पूजे किये जाने का भी कार्य कर रहे हैं।

उन जगह पे अच्छी अच्छी तरीके से रखी गयी है। उन सभी पुस्तकों को --

टीचर द्वारा उसे अच्छी तरीके से पढ़ाये जाने का कार्य कर रहे --

कुछ चार्ट पेपर काट रहे हैं। कुछ लोग गं गोंद से कुछ चिपकाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपने अपने तौर तरीके से --